इस तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक वाहन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे निवार रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर मे मुझे एक कार दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ कुर्सीयाँ दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ रोड दिखाई दे रही है इस त--

यहां मुझे बहुत सारी किताब दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ घास दिखाई दे रही है।